भौत सारी बाइक भी छन टाँका एैंच बटिन हौरी बिल्डिंग भी छन पिछाड़ी बटिन हौर दुकानी हर शटर भी होल दिखेण लगी।